शूज पहने हैं टी शर्ट और एक ट्रैक पैंट दिख रहा है।

दो कुर्सियां है और मंदिर के पीछे एक ट्रैक्टर जा रहा है।

इसके पीछे कुछ पौधे हैं और एक हरा कलर का नेट रखा हुआ है।

यह रूम के बाहर दो दो चार जगह ग्रिल लगी हुई है।

और कीवी केला अधिक बहोत सारे यहां फल फ्रूट जमा गए है जिसमें अंगूर भी है।

और कोई अपना मोबाइल यूज़ कर रहा है कोई आपस में बात कर रहा है।

लाल परदे और एक पंखा लगा हुआ है।

हैं जिसमें पिज्जा बर्गर और कोल्ड ड्रिंक्स रखी हुई हैं।

इसके बाजू में एक मैकेनिक की दुकान भी है।

और फाइव स्टार में एक सौ चौदह रुपय लिखा हुआ है।

इस पर एक ब्रिज है छोटा सा बाहर जाने के लिए।

कैमरा है और फायर एग्जिबिशन है।

इनके पीछे एक घर है कुछ पौधे हैं।

जहां पर एक लंबी सी नेट लगी हुई है।

जिसमें बड़ा सा स्वास्तिक बनाया हुआ है और --

जिसके कार में अंदर एक झूमर लगा हुआ है।

चित्र है जिसमें चार नीले रंग के सोफ --

जिसकी दीवाल पर पीछे कोर वैल्यूज लिखा गया है।

अ एक व्यक्ति बीच में से चल कर जा रहा है।

और उसने काले रंग के टी_शर्ट और ट्रैक पैंट पहेना हुआ है।

उसके पीछे एक व्यक्ति दिख रहा है जिसके सफेद कलर की बनियान और नीले रंग का पैंट है।

और उसके नीचे तीन चार गाड़ी खड़ी हुई है।

और एक व्यक्ति जो ऑर्डर लिख रहा है।

ये एक स्कूल का चित्र है जहां बहोत सारे विद्यार्थी खेल रहे हैं बाहर सामने--

और सामने एक खजूर का पेड़ एक नजर आ रहा है।

इसमें अलग अलग प्रकार की कुर्सी रखी हुई है।

इसमें एंटरप्राइज लिखा हुआ है काले रंग से।

और जमीन पर भुरे रंग की टाइल्स हैं।